यहां पर एक गुलेबी रंग का दीवार है और वहां उसके आसपास टेबल है और लॉकर है।

वहां पर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेट का एक लोगों है।

नोट हम यहाँ पर नोट गाड़ियाँ का सीट कवर रिपेयरिंग तथा--

जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उन्हें प्राइज मिल रहे हैं और शूटिंग भी हो रही है और कुछ बच्चे मोबाइल से शूट कर रहे है उनका।

ये एक रूम है यहां पर टेबल और कुर्सी है और उसके बाजू में खिड़की हैं और वहां पर उस रूम में भगवान के --

यहां पर बहोत सारा पानी है पानी के वहां पर बॉडर है और वहां पर रोड भी है।

यहां पे एक बहुत अच्छे सा बढ़िया सा नजारा बनाया हुआ है यहां पे हनुमान जी है शिव जी है दुर्गा माता जी है।

ये एक शॉप है ग्रोसरी शॉप है यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं डेली नीड्स एंड .